और उसकी बॉडर जो है वो गोल्डन कलर की चमकीली-चमकीली है एक व्यक्ति है जिस--

उन्होंने धोती पहन रखी है एक व्यक्ती है सामने जिसने--

इनमे कुछ लाल कलर के रखे हुए है उसके अलावा सामने बच्चे मन हैं।

वो पानी पी रहा है उसके अलावा पीछे चट्टान है और निचे के साइड पे कच्चा है और कुछ कचरा है।

यहाँ पर हमारे सामने हेयर सैलून है जिसने आसपास--

चम्मच उन रखे हुए है जिसमें से कांटे वाली है और एक सिम्पल चम्मच हैं।

और थोड़ा पीछे के साइड ऊपर एक दीवाल है।

और उसके अलावा सामने व्यक्ति उन लोग है जो खड़े है एक व्यक्ति जो है चल रहा है सामने आसमान है।

अव सामने सड़क है उसके दीवाल बनी हुई है जिसपे पार्किंग लिखा हुआ है सामने सीढ़िया है।

और हैंड फ्री है उसके अलावा उसके अलावा पीछे जो है वो--

एक वेक्ति है जो सामने खड़ा है काली टी शर्ट में और एक सामने है।

जो बैठा हुआ है कुछ व्यक्ति जो खड़े है एक बच्चा है जो खड़ा हुआ हैं।

और इसके अलावा सामने एक गाड़ी है जो काले कलर की है ऊपर आसमान है आस-पास पेड़ उन है एक मशीन है जो सामने है।